इस तस्वीर में सुकून वाला दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में खुला आसमान दिखाया गया है।

और प्राकृति का मिलन यहाँ है।

रस्ते के बाँया तरफ़ एक पैदल पथ है उसके पास एक दीवार है दीवार का रंग हरा और नारंगी रंग है।

उन्होंने सफेद कमीज पहन कर रखा है।

उन्होंने अपने दाया हाथ ऊपर करके रखा है।

परिवार और दोस्त इकठ्ठे है।

इस चित्र में बहोत सारे डंबल्स दिख रहा है डंबल्स काले रंग में है।

उस भवन का रंग नारंगी और सफेद है।

उस भवन के आसपास बहुत सारे लोग है और खुला आसमान भी दिखाया गया है।

इस घर के सामने एक गेट है।

इस तस्वीर में बहुत सारा औजार है।

इस तस्वीर में तीन गाड़ियां नज़र आ रहा है।

भवन का रंग हल्का गुलाबी और सफेद है।

भवन के सामने लोग चलते हुए दिख रहा है।

तस्वीर मे एक खुला मैदान को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक घर है।

गेट के दोनों तरफ दीवारें बनी हुई है।

इस चित्र में एक दो माला का बिल्डिंग है।

बिल्डिंग के ऊपर एस_बी_आई करके लिखा है।

ग्राउंड मे फूलो का पत्ता गिरा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में हॉल के भीतरी भाग को दिखाया गया है।

बहोत सारे फैंस और लाइट्स नजर आ रहे हैं।